यह दोनों का रंग आपस में बहुत अच्छा लग रहा हैं टमाटर के ढेर के साथ में मटर के ढेर बहुत सुंदर दिख रहे हैं यह किसी सब्जी वाले की दुकान हैं जहाँ पर अन्य सब्ज़ियाँ भी रखी हैं।

इसके बगल में एक पेड़ है जिसकी शाखा हमे दिखाई दे रही है बिजली के तार भी जाते हुए दिख रहे है।

--रखी है इसको पढ़ कर हम उनके बारे में जान सकते--

पूरी तरह भरी हैं एक साइड कुछ एक साइड हर घर में गुड़िया रखी हैं जो सारे अलग अलग डिजाइन की हैं दूसरे तरफ के अलमारी में स्टेशनरी का समान रखा हैं।

इसमे घास लगी हुई है किनारे पे लंबे लंबे ताड़ के वृक्ष दिखाई दे रहे है यह सब देखने में बहुत आकर्षक दिख रहा है आसमान में बादल है।

यहाँ पर एक डलिया दिखाई दे रही है जो टमाटरों से भरी है इसमें बहुत सारे टमाटर रखे हुए हैं।

अदरक गोभी आदि हर प्रकार की सब्जी हमे सब्जी बाजार में दिखाई दे रही है बगल में छोटी पतली गली है जिससे लोग आना जाना कर सकते हैं।

इस फोटो में हमे एक सड़क दिखाई दे रही है जो की बीच से डिवाइडर की सहायता से दो हिस्सों में बटी है इस तरफ से कारे जा र --

वृक्ष लगे हैं ये वृक्ष बहुत घने हैं इस मैदान में कुछ जाली नुमा चीज भी लगी है जहाँ पे लोग कसरत या व्यायाम भी कर सकते हैं।